सामने यहां बाइक की एजेंसी है। जिसके अंदर बहोत सारे स्कूटी और बाइक्स खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक बुक की शॉप है जिसके बाहर बोर्ड पर राजस्थान बुक्स एंड सेनेटरी लिखा हुआ है।

बीच में शॉप है जिसके आगे बोर्ड पर सुधा पार्लर लिखा हुआ है और इसके अंदर कुछ नमकीन और ठंडे वगैरा मिलते हैं।

और पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है जो की हरे भरे है और उन--

पनीर बटर और लिखा हुआ रखा हुआ है और पास में कुछ पीले कलर की मिठाइयां भी रखी हुई है और आस पास में कुछ सैलून और वगैरह की दुकानें --

बिल्डिंगे भी दिखाई दे रही है और बालकनी में कुछ कपड़े सूख रहे--

थालियां लिखा हुआ है इसके अंदर बहुत सारी लाइटें जल रही है और पंखे बंद हैं और ए_सी चल रही है और दीवार पर एक पोस्टर लगा --

और इसके नीचे खिड़कियों में कांच लगे हुए हैं और पंखे चल रहे हैं और सामने ऊपर ट्यूबलाइट दिखाई दे रही --

पीछे कुछ पीले रंग के लाइटें जल रही है और इस स्टेज के आगे कुछ बोड़ियां भी दिखाई दे रही है एक वाइट कलर की पानी की टंकी दिखाई दे रही है और इस स्टेज के पीछे कुछ --

यह एक शॉप है जिसके अंदर बहोत सारे टायर्स रखे हुए हैं मोटर साइकिल के टैक्टर के गाड़ियों के --

और इसके अंदर लाइट जल रही है और पंखे चल रहे--

चौकी वाले जिसके अंदर एक आदमी जा रहा है और आस पास में हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह एक शॉप है जिसके अंदर बहुत सारी मरी हुई मच्छिया पड़ी दिखाई दे रही है और दो आदमी बैठे बेच रहे --

देखने कुछ फसल लगी हुई है और आस पास मे बहोत सारे हरे भरे पेड़ भी है जिनकी पत्तियां दिखाई दे रही है।

यह एक नर्सरी की तस्वीर है इसके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे और नीम लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जो कि हरे भरे हैं और कुछ सूखे हैं जिनकी पत्तियां भी दिखाई दे रही है और एक वाइट कलर का कमरा बना हुआ है जिसके ऊपर एक --

और इसका दरवाजा खुला है और इसके ऊपर पीले कलर का पेंट किया हुआ है और दीवार पर कुछ पिक्चर्स और चित्र बनाए हुए दिखाई दे रहे --

और हमको को दूर दूर तक बहुत सारे घर भी दिखाई दे रहे हैं और आसमान साफ दिखाई दे रहे हैं सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है।